इस फोटो में मुझे एक दवाइयो की दुकान दिखाई दे रही है।

चारों ओर लोग नदी में नहा रहे हैं।

यहां पर बड़े-बड़े लोग खड़े हुएं हैं चारों ओर कैमरे लगे --

यहां पर बहोत सी दुकाने बनी हुई हैं दुकानों के पास में बड़े बड़े पे--

चादर या मैट बिछाया गया है चारों ओर गमले रखे हुए है।

यहां पर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

यहां पर बहोत सारी घांस उगी हुई हैं।